एयरटेल का बोर्ड दिखाई दे रहा है दुकानें और ठेला गाड़ी दिख रही है।

कबाड़ में बहुत सारी चीजें दिख रही है।

यहां हमें दुकानें नजर आ रही है।

खिड़की कांच की बनी हुई हैं।

यहां हमें एक दुकान दिख रही है दुकान कांच की बनी हुई है।

सी_एस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर नाम का--

यहां हमें एक किला दिख रहा हैं।

साइड में हमें एक कार भी दिखाई दे रही है।

पहाड़ के पास बहोत सारी घासे नजर आ रही है।

और नीचे एक दुकान बंद दिख रही है।

किचन का पूरा फर्नीचर किया हुआ है।

ऊपर कुछ बॉक्सेस भी रखे हुए दिख रहे हैं।

दो तीन पत्थर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

छोटे छोटे पौधे नजर आ रहें हैं।

छोटे टाउन नज़र आ रहे है झाड़ भी नज़र आ रहा है।

बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है टावर और वायर नजर आ रहे हैं सूरज नजर आ रहा है झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

ब्लू कलर की उसकी बॉर्डर दिखाई दे रही है। छोटा पंखा दिखई दे रहा है और एक लाइट चालू दिख रही है।

और हमें यहां पर दिवाल पर तोरन लटकी हुई दिख रही है घड़ी और पंखे दिख रहे हैं और टी_वी भी दिख रही है।

यहां हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है झाड़ नजर आ रहे हैं।

और वाइट कलर की दीवाल नजर आ रही है।

स्टेज पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

कबर्ड के अन्दर बुक्स और बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।